लोहे के कुछ पिलर भी खड़े हुए हैं और--

दो बल्ब भी लगे हुए हैं।

और पीछे बहुत से कलर के डिब्बे भी रखे हुए हैं।

यह फोटो में सभी को अवॉर्ड दिए जा रहे हैं।

और इसमें चार गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

सामने की ओर दो स्कूटी भी खड़ी हुई है।

और इंसान के दो पैर भी दिख रहे हैं।

और बराबर में एक कूलर भी रखा हुआ है।

और दीवार पर लिखा हुआ है कम्युनिटी हेल्पर ।

और कुछ अगरबत्तियां भी दिख रही हैं।

तालाब के किनारे एक रस्ता भी जा रहा है।

और छत में दो फैन भी लगे हुए हैं।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

इस तस्वीर में ग्यारह बच्चे खड़े हुए हैं।